सामने में कुछ बोडे रखें हुए हैं जो की ऑरेंज कलर के हैं।

यह दृश्य में सामने एक मिरर लगाया हुआ है जिसमें सामने एक व्यक्ति है जो कि अपने फोन का फ्लैशलाइट जलाकर और वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ है।

पास मे बहोत सारा रेख बनाया हुआ है उसके ऊपर बहुत सारी व्हाइट कलर की लाइटें लगाइ गई हैं।

पास में एक फोन पेय का स्कैनर रखा हुआ है।

जिसके सामने एक बहोत बड़ा सा बिल्डिंग है जो कि वाइट कलर का है।

ये किराना दुकान का है जिस दुकान में बहुत सारे बिस्किट रखे गए हैं।

आसपास बहुत बड़े बड़े चट्टानें लगे हुई हैं।

पास में एक चार्जर और फोन लगाया हुआ है बगल में एक चेयर रखा गया है उसके बगल में पानी की बॉटल रखी हुई है जोकि ब्लू कलर की है।

यह दृश्य एक बर्तन दुकान है जिस दुकान का नाम है बर्तन दुकान।

आसपास बहुत सारे बाल्टी तसला डेची ये सब रखे हुए हैं जोकि स्टील के हैं।

उसके ऊपर बहुत सारे बैलून लगाए हुए हैं जो की वाइट कलर के और पिंक कलर के पास में गेंदा का फूल लगाया--

पास में एक शटर है वो भी नीले कलर का है जिसमे एक ताला लगाया हुआ है।

कुछ बकरे की तो कुछ मुर्गी की जो की व्हाईट कलर की पास में--

लगाये हुए हैं सामने जो दीवाल है वाइट कलर का है और बैगनी कलर का उसके पास में नीले कलर की दीवार और ग्रीन कलर की है।

पास में जो दीवार है जो बनाई गई है वो पीले कलर की है।

एक ऑरेंज कलर का है तो एक नीले कलर का।

उसके पास में एक कुत्ता है जो कि काले रंग का है।

बगल में बहुत सारे प्लास्टिक टांगे गए हैं ऊपर में एक बल्ब लगाया हुआ है जो कि वाइट कलर का है उसके पास में एक फोनपे का स्कैनर रखा गया है।

इसके पास में चार तस्वीर टांगी हुई है एक ए पी जे अब्दुल कलाम की एक भीमराव अंबेडकर की एक जवाहरलाल नेहरू की है।

पास में एक घड़ी टांगी हुई है जो कि व्हाइट और नीले रंग की है।

बहुत सारी महिला है जोकि साड़ी पहनी हुई है आसपास बहोत सारी चूड़ी रखी गई है।

उसके अगल बगल छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं पास में बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं जोकि ग्रीन कलर --

में दो तकिए लगाए हुए हैं पास में एक महिला है जिसने पीले कलर की साड़ी पहनी हुई है।

पास में एक मिरर लगाया हुआ है।

बगल में ट्रैक्टर है जो की रेड कलर का है।

नीचे एक चटाई बिछाई गई है जो कि नीले रंग की है।

पास में कुकर रखा हुआ है और मिक्सर रखा हुआ है।

यह दृश्य एक कॉफी शॉप का है जिस दुकान का नाम है कॉफी सिंस उन्नीस सौ ऊंचास।

पास में एक स्पीकर बाक्स रखा हुआ है बगल में एक महिला की तस्वीर--

यह दृश्य में सामने बहुत सारी बाईकें लगाई हुई हैं जो की ब्लैक कलर की है।

बच्चियां जोकि ब्ल्यू कलर का शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई है और बच्चे जो ब्ल्यू कलर का शर्ट और पैंट पहने हुए है आस पास और भी व्यक्ति लोग है एक महिला है जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।